हमें यहाँ पर बहोत सारे बरफीले पहाड़ दिख रहे हैं हमें यहाँ पर काले पहाड़ सफ़ेद पहाड़ दिख रहे हैं।

हमे यहाँ पर बहोत सारी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं बहोत सारे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं हमें यहाँ पर --

हमे यहाँ पर एक दुकान दिख रही है रेड कलर की टीन सेट हमे दिख रही है। हमें पेड़ पौधे दिख रहे हैं ब्लैक कलर की ब्लू कलर की बाइक दिख रही है हमे यहाँ पर --

हमें यहाँ पर कुछ रास्ते भी दिख रहे है और नीला सफ़ेद आसमान दिख रहा है।

हमें यहां पर बहोत बड़ा शहर दिखाई दे रहा है छते दिखाई दे रही है हमें यहाँ पर घरो का कलर दिखाई दे रहा है जोकि पिंक कलर का है वाइट --